जो कि हिंदू धर्म के मंदिर की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीर बहुत ही मनमोहक एवं सुंदर दृश्य बना रही है।